किनारे सोफा कुर्सी रखा हुआ है जिस पे एक आदमी बैठा हुआ है।

इस चित्र में एक मकान बन रहा है इसमें पांच मजदूर काम कर रहे हैं एक मजदूर ईटा ढो रहा है।

इस तस्वीर में तीन मछ मछुआरा है जो मछली पकड़ कर लाया है।

और बालों में गजरा लगाई हुई है हाथों में मेहंदी लगाई हुई है।

इस तस्वीर में पार्टी या फंक्शन के लिए हॉल को सजाया गया है।

हॉल के बीचों बीच लाल कार्पेट बिछाया हुआ है और दोनों तरफ बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई हैं।

यह एक कुरियर पार्सल ऑफिस है।

यह एक शादी वियाह की सजावट का तस्वीर है।

यह एक गांव का तस्वीर है।

इसका छत कोना दार बनाया गया है और चर्च का छत लाल कलर से पेंटिंग किया गया है।

रोड किनारे बिजली का लंबा लंबा खंबा है जिसमें लाइट लगी हुई है।

दुकान का दरवाजा कांच का लगा हुआ है।

यह एक बागीचा का तस्वीर है इस बागीचा में बहुत तरह के फूल के पौधे लगे हुए हैं।

सामने मैं गेंदा का फूल का पौधा लगा हुआ है।

यह एक स्कूल के मैदान में फंक्शन हो रहा हैं।

मंदिर के गेट पे जय श्री राम लिखा हुआ है।

यह दुकान के अंदर एक बड़ा सा पोस्टर भी है और--

इस दुकान में बहुत सारा जूता चप्पल रखा हुआ है।

रूम के कोने में एक कुर्सी भी रखा हुआ है जो ब्लैक और वाइट कलर का है।

ड्रेसिंग में आईना भी लगा हुआ जिसमें कुछ चित्र दिखाई दे रहा है।

यह एक बगीचा का दृश्य है।

यहां बहुत सारे पेड़ पौधे भी--

इस तस्वीर में छत पर एक कूलर रखा हुआ है।

बगल में एक आदमी लाल टेबल पर बैठा हुआ है कुछ काम कर रहा है।

यह एक बिग शॉपी की दुकान है।